एक रेलवे प्लेटफॉर्म जिसमे एक गाड़ी खड़ी हुई प्लेटफॉर्म में कुछ कुर्सियाँ लगी है प्लेटफॉर्म के बगल में छोटा सा मकान हैं जिसमे एक पानी की टंकी लगी हैं प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर में एक बड़ा सा पेड़ हैं।